एक मैकेनिक दिखाई दे रहा है जो कि गाड़ी सही कर रहा है उसने लाल कपडे पहने हुए है गाड़ी का ढक्कन खुला हुआ दिखाई दे रहा है पास ही में और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जो कि पीले कलर की है।

और यहाँ पे प्लास्टिक रिंग के अन्दर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है रिंग का कलर पीला दिखाई दे रहा है और इस पर मिट्टी डली हुई दिखाई दे रही है बच्चे खेलते हुए दिखाई --

और सीढियां भी दिखाई दे रही है सीढ़ियों के आस-पास पौधे ही लगे हुए दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है।

टेबल के आगे क्रीम कलर का बॉर्डर बना हुआ दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल का रंग नीला भी दिखाई दे रहा है इसमें कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है लोहे की जाली दिखाई दे रही है।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

पत्थरों के बीच में पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं बड़े पेड़ की जड़ें निकलती हुई दिखाई दे रहीं है।

एक काला बड़ा रंग का स्टैंड भी दिखाई दे रहा है नीचे कारपेट बिछी हुई है वह भी काले रंग की दिखाई दे रही है और बड़ी-बड़ी स्टैंडे भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक लड़की ने नीले कलर की फ्रॉक पहनी हुई है तथा एक लड़की बीच में खड़ी हुई है जिसने सफ़ेद कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है पीछे स्टेज दिखाई दे रहा है वहां पर काले परदे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

पास मे एक और बोर्ड लगा हुआ दे रहा है जिसमें वैशाली मोबाइल शॉप दिखाई दे रहा है। पास ही में टायर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दुकान दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है। पानी के आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे के.आर.एम. टॉवर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।